नमस्कार conductivity of ionic solutions पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे:
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ:
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको expeyes junior interface से परिचित होना चाहिए यदि नहीं तो सम्बन्धित tutorial के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब सबसे पहले विलयन की चालकता परिभाषित करते हैं
विलयन की चालकता उसमें से धारा प्रवाह होने की योगयता का मापक होती है
पानी की चालकता इसमें घुले हुए आयनों की सान्द्रता से सीधे सम्बन्धित होती है
अब हम now के पानी की चालकता को दिखायेंगे
मैं circuit connections समझाऊँगी a1 sine से जुड़ा हुआ है
sine और a2 के तारों को नल के पानी वाले काँच के glass में डुबाया हुआ है
10k प्रतिरोधक को a2 और gnd के बीच जोड़ा गया है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window में a1 पर click करें और ch1 तक खींचें a1 ch1 पर निर्दिष्ट किया जाता है
a2 पर click करें और ch2 तक खींचें a2 ch2 पर निर्दिष्ट किया जाता है
waves तरंगों को समायोजित करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ दो sine waves बनती हैं
काला वक्र वास्तविक sine wave है लाल वक्र नल के पानी की चालकता है
ch1 पर click करें और fit तक खींचें ch2 पर click करें और fit तक खींचें
window के दायीं तरफ voltage और आवृत्ति की values को देखें ध्यान दें नल के पानी का voltage input voltage की तुलना में बहुत कम है
voltages और degree में phase difference को देखने के लिए ch1 पर right click करें
अब हम copper sulphate विलयन की चालकता को मापेंगे विलयन बनाने के लिए 100 ml पानी में एक spatula copper sulphate घोला गया है
उसी connection में sine और a2 के तारों को copper sulphate विलयन में डुबाया जाता है
plot window पर हम चालकता वक्र देख सकते हैं
लाल वक्र copper sulphate विलयन की चालकता है
बड़ी हुई चालकता विलयन में उपस्थित copper और sulphate ions के कारण है
दायीं तरफ voltage और आवृत्ति की values को देखें
voltages और phase difference values देखने के लिए ch1 पर right click करें
अब हम तनु sulphuric acid विलयन की चालकता को मापेंगे तनु dilute sulphuric acid की कुछ बूँदें पानी में डाली गई हैं
तार sulphuric acid विलयन में डुबाए गए हैं अब plot window पर परिणाम देखते हैं
देखें कि काला और लाल वक्र लगभग एक दूसरे पर हैं
तनु sulphuric acid की कुछ बूँदें डालने पर नल के पानी की चालकता बड़ गई है
दायीं तरफ voltage और आवृत्ति की values को देखें
voltages और degree में phase difference को देखने के लिए ch1 पर right click करें
हम तनु पोटैसियम hydroxide विलयन की चालकता मापेंगे तनु पोटैसियम hydroxide विलयन की कुछ बूँदें नल के पानी में डालते हैं
हम देख सकते हैं कि काला और लाल वक्र लगभग एक दूसरे पर हैं
नल के पानी में पोटैसियम hydroxide विलयन की कुछ बूँदें डालने पर चालकता में वृद्धि को देखें
window के दायीं तरफ voltage और आवृत्ति की values को देखें
voltages और degree में फेज़ difference देखने के लिए ch1 पर right click करें
voltage values को उपयोग करके हमने ionic विलयनों के प्रतिरोध की गणना की है और परिणामों को सारणीबद्ध किया है
नल के पानी की प्रतिरोध value 77 kohm kilo ohm है कॉपर सल्फ़ेट विलयन की प्रतिरोध value 12 kohm है
sulphuric acid विलयन की 017 kohm और पोटैसियम hydroxide विलयन की 014 kohm है देखें कि आयनिक सान्द्रता concentration बढ़ने पर प्रतिरोध की वैल्यूज़ kohm होती है
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा: चालकता मापना और आयनिक विलयनों के प्रतिरोध की गणना करना
एक नियत कार्य में sodium hydroxide acetic acid और sodium chloride विलयनों का उपयोग करके चालकता मापें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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict निधिबद्ध है